दिया गया दृश्य पहाड़ों के बीच एक छोटा-सा तालाब देखने में कितना मनमोहक और उम्म सुंदर लग रहा है भारतीय जो सभ्यता संस्कृति में इस परिवेश का इतना अच्छा महत्वपूर्ण है देखने के बाद मन गदगद हो --

किया गया पौधा ये तंबाकू का है और तंबाकू जो है नशे में प्रयोग होता है। भारत सरकार का अगला कदम है कि नशा मुक्त करने के लिए इस पौधे को पूरी तरह रोक लगाया गया और फिर भी लोग दिनचर्या की जिंदगी में इसका कभी-कभी सेवन के रूप में यूस करते हैं।

इतना अच्छा मनमोहक दृश्य जो है एक पूल का है जिसको सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ से घिरे हुए हैं और यह जंगलों में है ताकि लोग इस पार से उस पार जाए लगता है की इस पूल के नीचे कोई नदी है जिस जो --

दिया गया दृश्य जो है मेट्रोपोलिटन का है जहां पे ज़ेबरा क्रॉसिंग है और चारो बगल गाड़िया जो है सिग्नल का इंतज़ार कर रही थी और सिग्नल के ही वजह से गाड़ी रुकी हुई है | यह जरूरी है कि यातायात को सुलभ बनाने के लिए सी सिग्नल का होना क्योकि लोग परेशान न हो इसलिए सिग्नल लगाया जाता है।